यह एक गेट बनाया गया गेट में नीला रंग का पोस्टर लगाया गया--

और रेलवे पटरी पर ट्रेन भी दिखाई दे रहा है और यहां पे बैठने वाला भी बनाया गया है।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

यह एक रूम है रूम का दीवार सफेद है ।

बिल्डिंग के बाहर झंडा भी लगाया गया है और यहां पे सीढ़ी भी बनाया गया है।

यह एक रूम है रूम का दीवार पिला है और रूम में काउंटर बनाया गया है।

वह लोहा का है और काउंटर में बहुत सारा सामान रखा गया है।

लाइट भी लगाया गया है और बाहर में जनरेटर है।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग का दीवार सफेद है और बिल्डिंग में रेलिंग भी बनाया गया है।

और बाहर में बहुत सारा अल्वेस्टर रखा गया है।

घर को करकट से बनाया गया है और यहां पे धुआं निकलने वाला बनाया गया है।

और काउंटर में बहुत सारा सामान रखा गया और रूम में लाइट भी लगाया गया है।